बोहोत सारे लड़के लड़कियां इस कोचिंग सेंटर में आते हैं पढ़ाई करते हैं।

यह एक घर है। यह घर चारो तरफ पानी से भरा हुआ है।

इसका इंजन भी निकली गयी है और यहाँ पे बनाने के लिए लायी गयी है यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ठीक करते है ।

और यहाँ पे बोहोत सारे आदमी ट्रेन में चढ़ने के लिए आती है और प्लेटफार्म नंबर वन से --

काफी सारे यहाँ पे पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं और बोहोत सारे आदमी आये हैं।

सभी के अपने-अपने अलग-अलग केबिन दिए गए है सभी के केबिन में एक-एक लैपटॉप है और काफी सारे लोगो की यहाँ पे भीड़ रहती हैं ।

यह एक बिल्डिंग है यह बिल्डिंग बोहोत बड़ी है यह बिल्डिंग अभी खंडर में बदल चूकी है।